गाड़िया कई कलर केहैं रेड है वाइट है।

बीच बाजार में एक झोपड़ी भी है झोपड़ी के ऊपर पन्नी भी डाला गया है।

यह दुकान है दुकान में बहोत सारे सामान रखे गए हैं रंग बिरंगे छोटे बड़े सभी सामान दिखाई दे रहे हैं।

बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं ऊपर फूल माला से सजाया गया है।

दुकान के बगल में कोई खाने पीने वाला सामान भी टांगा गया है।

गमलों में पौधे लगाए गए हैं सामने लेडीज ज जेन्स खड़े हुए हैं।

ना बहुत सारे सामान भी रखे गए हैं के बगल में बहुत सारे सामान रखा गया ।

यह एक कमरा है कमरे में एक लेडिस और एक जेंट्स खड़े हुए हैं कमरे में सोफा भी रखी गई है सामने मेज भी है।

दीवार पर पर्दे लगे हुए हैं ऑक्सीजन सिलेंडर हॉस्पिटल में काम आते हैं।

याअलग-अलग कलर के दो रिक्शे खड़े हुए हैं।

यहां एक व्यक्ति भी खड़ा है बगल में एक व्यक्ति खड़ा है।

म्ह गमलों में छोटे-छोटे पौधें लगे हुए हैं--

दूसरी तरफ भी एक बाइक खड़ी है जोवाइट कलर की दिख रही है सामने--

सामने बहोत बड़ी उंची बिल्डिंग भी दिखाई दे रही है जो चारो तरफ से खिड़किया और दरवाजे दिखाई दे रहे है।

जहां दीवार के सहारे बहुत कलर वाइज पोस्टर भी लगे हुए हैं।

दुकान है दुकान मेंरे पर बहुत सारे छोटे बड़े सामान रखे गए हैं स्टेशनरी का दुकान हो सकता है।

और दूर दूर तक पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे है बिल्डिंग के पीछे पेड़ पौधे भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर खुला आसमान भी दिखाई दे रहा है।

नीचे फ फर्श पर कुर्सी भी पड़ी हुई है सामने लोहे का गेट भी है।

यह प नदी है नदी में दो व्यक्ति खड़े हैं एक व्यक्ति पानी के अंदर है एक व्यक्ति बाहर पानी के बाहर है।

बड़े बैठे भी हैं खड़े भी हैं एक व्यक्ति कुर्सी पकड़ के खड़ा है चारों तरफ से यहां व्यक्ति ही व्यक्ति दिखाई दे रहे--

यहां बहुत सारी सीढ़िया हैं जिसमें मंदिर वगैरह भी दिखाई दे रहा हैं उं सीढ़ीओ के ऊपर दो व्यक्ति चल रहे हैं।

वाइट कलर की दीवार है दीवार बहुत मोटी हिह भि है।

यह दुकान है दुकान में बहुत सारे खाने पीने वाला सामान मिल रहा है।

यह हाल है हाल में बहुत सारे मेज कुर्सी रखे गए हैं मेज के चारों तरफ से वाइट कलर की कुर्सियां रखी गई है यहां लएक लेडीज --

बहुत सारे मेज कुर्सी लगे हुए हैं जिसपे लोग बैठे हुए भी हैं।